ये किसी व्यक्ति का मकान है। उसके नीचे दुकान है जोकि एक पसरठ की दुकान कही जाती है।

यहाँ पर लोग सौदा लेते हैं और यहाँ पर लोग आते हैं।

ये बहुत सुंदर होटल है।